इधर झाड़ियाँ हुई हैं और बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो हरे-भरे दिख रहे हैं।

यहाँ एक उम यहाँ एक नारियल का पेड़ है जो लम काफी लम्बा है ।

कोई ट्रेन में से पिक लिया कोई ट्रेन में से फोटो लिया है।

यहाँ बड़ा-बड़ा चट्टान है और एक --

घास भी है और एक दूर पेड़ एक दिख रहा है जो काफी घना है ।

टेबुल भी लगाए गए हैं कुर्सी भी लगाई गई हुई लगाई है।